इसके ऊपर में ही एक हरे रंग का बैनर है जिसमें नूर टावर लिखा हुआ है।

इसके आस पास में बहुत सारा दुकान है और बहुत सारी बैनर भी लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

अभी मछलियों को एक प्लेट में रखा गया है जो की उजले रंग का है।

यह एक बाइक के सर्विस सेंटर का दृश्य है।

यह एक होटल का दृश्य है इसके ऊपर में एक बैनर लगा हुआ है जिसमें केरला होटल लिखा हुआ है।

यह पांचों कैंडल का स्टैंड एक लोहे का बना हुआ बक्शा के ऊपर में रखा हुआ है इसके बगल में एक पीले रंग का दीवार भी दिखाई दे रहा है।

यह एक पार्क का दृश्य है।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

गेट के बाहर में ही एक बकरी का मूर्ति और एक गाय का मूर्ति भी रखा हुआ दिखाई दे--

पारक के बाहर में ही एक टावर भी दिखाई दे रहा--

ग्राउंड में ही एक छोटा सा पौधा और आस पास में बहुत सारा पेड़ दिखाई दे रहा है।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

और बहुत सारा तरह तरह का धनिया पत्ता टमाटर बैगन सभी को बोरे में जमीन पर नीचे बिछाकर रखा गया है।

बाहर में एक मेन गेट हैं जो की लाल रंग का है।